आजु बाजु दो पेड़ दिख रहे होगे जो हरे कलर के होगे और आगे भी पेड़ दिख रहे है रोड पे कुछ ऑटो खड़ा है वो ग्रीन और येलो कलर का होगा।

मुझे एक कार का शोरूम दिख रहा है जिसमे गुब्बारे से सजावट है और बहोत सारी वाइट कलर की लाइट लग हुई ऊपर की दिवाल--

और मतलब इतने सारे लोग बैठे हुए हैं और एक बोर्ड दिख रहा है वाइट कलर का--

और जो दिवाल हैंगी वो स्काई ब्लू की दिख रही हैंगी एक शटर हैं जो ब्लैक कलर दिख रही है साइड मे--

और सामने वाइट कलर के पर्दे और टेंट लगे हुए हैं रेड कलर का टेंट और नीचे--

ब्राउन कलर का गेट दिख रहा है खूब सारी मतलब कार कड़ी हेंगी ब्राउन और व्हाइट और --

पौधे की शॉप हैगी फूल और पौधे की--

मुझे एक ब्रिज दिख रहा है जो वाइट कलर का और ब्रिज के ऊपर एक और ब्रिज है गा जो है गा ब्लैक कलर का ब्राउन कलर का--

पेड़ दिख रहे है जो ग्रीन कलर के हेंगी ये एक डस्टबीन दिख रहा है जो हरा कलर का है दो चेयर दिख रहे हेंगी जो ऑरेंज और ग्रीन कलर की है ब्लैक कलर भी हेंगी--

और ग्रीन की उसमे खड़िया हंगी जो ब्लैक कलर हैंगी बस मे--

और बस के सामने मतलब दो-तीन पेड़ दिख रहै होंगे जो हरे कलर हंगे।

जो एक बैंक दिख रहा है बैंक के निचे शटर दिख रही है और--

यहाँ और यहाँ पर मिट्टी डली हुई है थोड़ी घास भी डली हुई है ये जो हरे कलर की हेंगी।

उम् मुझे कार के पीछे छोटे-छोटे से पेड़ दिख रहे है गे--

वाइट कलर की एक ब्राउन कलर की है ये और मैदान दिख रहा है जहाँ पर क्रिकेट खेला जा रहा है कुछ लोग बैठे है कुछ लोग खेल रहे है कुछ खड़े है।

मुझे सामने बिल्डिंग्स ही दिख रही है जो वाइट और स्काई ब्लू की है और उसमे खिड़कियाँ लगी हुई है ब्लैक कलर की और बिल्डिंग के बाहर पेड़ दिख रहे है।